यह एक रेस्टोरेंट का चित्र है।

एल_ई_डी लाइट लगाया गया है रंग बिरंग का।

दो खिड़की दिखाई दे रहा है।

कुछ घास दिखाई दे रहा है।

और उस कांटा को जाली से लगाया गया है।

घास फूस दिखाई दे रहे हैं।

इसके दो हाथ पैर दिखाई दे रहा है इसका मुंडी दिखाई दे रहा है।

कुछ गमले दिखाई दे रहे हैं।

यहां का टेबल दिखाई दे रहा है।

टाइल्स दिखाई दे रहे हैं।

जो इस स्कूल को नीला कलर का पेंट किया गया है।

इसमें बहुत सारी कुर्सियां दिखाई दे रहे है।

दिवाल के ऊपर डिजाइन दार सजावट किया गया है बहोत सारी लाइटे लगी हुई हैं।

अगल बगल पेंट किया गया है सजावट किया गया--

यह एक का चित्र है।